बोर्ड है बोर्ड में वायर लगा है चार्जिंग हो रहा है लैपटॉप का।

यह एक दु अ क्लास है जहां लोग बच्चे लोग बैठकर डांस सीख रहे हैं।

यहां एक लकड़ी का ढांचा दिख रहा है है।

पाटी का बंदोबस हुआ है लाल कलर का फूल गुला अ--

यह एक सिली सी अ सिलिब्रेट क किया जा रहा है यहां केक है बेकरी है गेन्स है।